यहाँ पर कुछ समरोह हो रहा है यहां पर तीन लड़के और दो लड़कियां है यहाँ पर एक माइक भी है औ --

यह एक बहुत बड़ा हवेली है हवेली कुछ बहुत पुराने टाइप का लग रहे हैं यहाँ पर हरे-हरे घास भी हैं।

जो बना हुआ है एक उजर कलर का है एक ब्राउन कलर का है यहाँ पर बिजली का तार भी दिख रहा है।

और एक औरत है एक-दो औरत है एक फ़ोन से बात कर रहे हैं और यहाँ पर तराजू भी है तौलने वालें --

यह एक तालाब है बहुत बड़ा तालाब है यहाँ पर तीन नाव है और बगल में कुछ हरे-हरे घास भी देख रहे --

यहाँ एक बहुत बरी हवाई हवाई अड्डा है और यहाँ पे बहुत बड़ी बस भी है।

और एक आदमी है जो जू जूते पहने हुए हैं कुछ हाथ कुछ लिए हुए हैं सामान --

एक क्लिनिक है और क्लिनिक का नाम हिंदुस्तान एक्स-रे सेंटर है।

यहाँ एक आदमी है और आदमी उजले कलर का शर्ट और फुल पेंट पिन्हे हुए है और बेल्ट भी पिन्हे हुए है।

यह एक पेट्रोल पम्प है जो लगता है पेट्रोल पंप अभी बना नहीं है बन रहा है वहां पर एक गाड़ी भी है।

यह एक क्रिस्चियन का स्कूल है। यहाँ पर चार औरत हैं और चारों औरत जो सेल्फ़ी ले रहे हैं।

वहाँ पर पीले रंग का घर है और यहाँ पर रेलिंग रेलिंग के पास में पानी है उसके अंदर --

और रेड कलर का बैग टांगे हुए है और एक लड़के है जो उजला कलर का शर्ट और फुल पेंट पहने हुए है एक लड़का बाल कटा रहा है।

यहाँ एक सैलून है सैलून का दुकान है यहाँ पर एक लड़का बाल कटा रहा है और एक आदमी उसका बाल काट रहे है।